फैन के बाजू में ए_सी लगी है शायद ये फिटनेस जिम है कोई।

अह जिसमें झंडा झंडा लगा तिरंगा झंडा इंडिया का।

और आनंद धारा अ डायरेक्टर ऑफिस कुछ है वो--

वही से एक बाइक गुजर रही है नहीं दो बाइक गुजर रहे हैं और एक व्यक्ति गुजर रहा जिसने रेड कलर के शूज़ पहन रखे हैं।

और उन लोगो ने रेड कलर के एक ने शूज़ पहने एक ने ब्लैक --